पुल बनाया गया है।

पीला कलर का बिल्डिंग है ।

यह एक होली की तस्वीर है जिसमें छः लोग होली मना रहे हैं ।

बहुत सारे बच्चे किताब कॉपी ले के बैठे हुए हैं हाथ में कलम रखे हुए एक पन --